घर के पीछे बंबू बहुत दिखाई पड़ेगा।

और क्यू_आर कोड भी रखा हुआ है।

पोकलेन के आगे तीन लोहा रखा गया है।

यह एक पुराना घर है।

जो टोपी सफेद कलर का पहना हुआ है।

ग्रे कलर का पेंन पहना हुआ है।

उसके पीछे चार दिखाई देगा--

घर का आगे में देने से सिक्स व्हीकल दिखाई पड़ रहे--

उसके सामने में एक लाइट है।

घर का सामने मे डंडे से बंबू से हुआ फेंसिंग दिखाई देगा।

ये एक मछली बेचने वाला दुकान है।

में से एक चक्का वाला चेयर दिखाई देगा।

जो स्कूटी बेच रहा है।

दुकान का अंदर मेंदिखने से एक लड़की और दो लड़का बैठा हुआ है सीट में--

बाहर में बहुत सारे आदमी हैं जो व्हाइट कपड़ा और रेड कलर कलर का पहना हुआ है।

मूर्ति के पीछे में एक पोर्स पोल है।

से एक अच्छा ग्राउंड दिखाई पड़ेगा।

यहां में तीन टिंकी बनाया हुआ दिखाई दे रहा है।

से पैर दिखाई देगा।

इसमें पर्दा व्हाइट येलो रेड कलर का यूज किया गया है।

इसका अंदर में टेबल और चेयर दिखाई देगा।

बाहर मे एक लड़का है माक्स सफेद कलर का पहन के।

का लूंग साथ कलर है इंजन कलर --

और ऊपर में एक बरा वाला ब्रिज है।

बाइक का सीट भी खराब हो गया है।

बाइक के पीछे दो लड़का खड़ा हुआ हैं।

यहा में दिन सेन दो सफेद कलर का मूर्तियां दिखाई पड़ रहा है।

से एक टेबल दिखाई पड़ेगा।

यहां में डींग से बस स्टेशन दिखाई पड़ रहा हैं।

और दो बस अलग अलग कलर का रेड और येलो का--

आगे मे तीन कार है।

वॉल में देखने से एक स्विच बोर्ड दिखाई पड़े--

एक लड़का बैडमिंटन का बैट बनाके दिखाई पड़ रहा है।

बीच में स्विमिंग पूल है जिसमें दो तीन लड़कियाँ स्विमिंग कर रहे हैं।

इसी में एक सेंटाक्लोज हैं।

यहां हमें एक रिवर दिखाई पड़ रहा है।

और तार भी दिखाई देगा।